तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है एक दरवाजा है और हमें गेट जैसा पत्थर का डिजाइन बना हुआ--

और बिल्डिंग भी उस तरफ हमे बनी नजर आ रही है मैदान के--

कारें हमें खड़ी हुई लाइन से नजर आ रही हैं आदमी भी खड़े हुए हैं।

और नीचे पत्थर दिखाई दे रहे हैं जमीन में।

सड़क पर दिखाई दे रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है नीले रंग का जिस पर नारायण श्री होमोपैथिक मेडिकल कॉलेज --

तस्वीर के अंदर हमे एक दुकान दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉनिक शॉप है।

बड़ा सा पानी के ऊपर हमें क्रूज दिखाई दे रहा है।

तस्वीर के अंदर हमें कुर्सियां ल लगी हुई दिखाई दे रही है बहोत सारी।

हमें एक जगह पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है जहां आसपास--